त नीचे की और गैस लगा रखा जी तथा उसके पीछे कुर्सी तथा चार लोग नज़र आता जी तथा चारों तरफ सफ़ेद रंग की बाउंड्री और --

तथा पड़े दिखाई देता ऊपर रंग-बिरंगा आसमान नज़र आता।

की रंग-बिरंगी कालीन बिछ रखी है जी।

वे व्यक्ति के हाथ में एक इंच टेप है जी जो की नाप रहा है जी उसके अगल-बगल बड़े-बड़े पत्थर टूटी-फूटी सड़क नज़र आती जी।

हरे रंग की कालीन कुर्सी और मेज नजर आता जी कुर्सी पे एक समान रखा है जी।

इस फोटो में देखता जी एक पारक है | पारक के अंदर एक झूला है जी जो की पीले कलर का हरे कलर का बहुत बड़ा पारक है नज़र आता झूला भी बहुत --

इस फोटो में देख सकता जी एक सोफे का लक्कड़ क्या बना हुआ है जिसके प काफी डिज़ाइन हुआ हे जी।

इस फोटो में आप देखता जी खूब सारे लोग एक साथ खड़े होते जी तथा उनके बगल में टेंट भी होता जी तथा आप सामने देख सकता जी।

इस फोटो में आप देखता जी की एक व्यक्ति जो की फ़ोन लेके खड़ा है उसके ब अगल-अगल भी कई व्यक्ति दिखता।

कई मशीने भी पीछे दिख रही आगे भी एक मशीन नजर आती।

और पड़े भी दिखाई देता जी पारक के अंदर भी बहुत सारे खड़े लोग हैं जी लाइटे भी।

इस फोटो में देख सकते हैं की दो बच्चे हैं एक बच्चा ऊपर जाल के चढ़ा त एक बच्चा जाल के ऊपर टंग रखा है जो की सहारे पे खड़ा हो रखा है।

इस फोटो में आप देखता जी सफेद रंग का भवन दिखाई देता चारो ओर से उसके लोहे का बाउंड्री लगा होता तथा खम्बा भी नजर आता।

इस फोटो में आप देख सकते है जी एक मूर्ति बड़ी भ दिखाई देती जो की महात्मा बुद्ध की नजर आती ये मूर्ति --

स्टेज में कुर्सियाँ भी दिखाई दे रही है | ऊपर पोस्टर भी दिखाई दे रहा है जी।